और ये एक मार्केट में मॉल है उसके अंदर ये बहुत बड़ा मॉल है यहां फर्स्ट ऊपर में ए_सी लगा हुआ है.

चॉकलेट मिलता है टॉफी मिलता है सेंटर फ्रेश और फ्रूट --

यहां पर और यह अच्छा दुकान है और यहां पे अलग अलग किस्म का--

बैडमिंटन और टैडीबियर अवलेवल है।

ये एक रेलवे स्टेशन है हरिनगर निकास द्वार इधर है और हरिनगर यहां पे लिखा हुआ और ये डस्टबिन है.

नंबर हैजीरो फोर फाइव सेवेन एठ टू --

पहाड़ है पहाड़ में नदी है नदी और झड़ना है ऊपर से माउंटेन से आ रहा है और पीछे दूर-दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है।

और ये एक टिकट घर है और यहां से सभी लोग टिकट हटा रहे हैं दो-तीन लोग लाइन में लगे हुए हैं आगे में बस रखा हुआ है।

ये एक शेर है और ये एक पिंजरे में बंद है और इसको कुछ देखने में लग रहा है कि ये--

ये एक फेविकॉल ये सब का दुकान है और पेंट का श्रीराम जिसका नाम है।

ये एक बस्प है और यहाँ पे आगे में कंडक्टर बैठा और कंडक्टर के बगल में गेयर है और यहाँ पे चेयर है।

ए_ टी_एम_ है और वो क्या बोलते हैं बैंक भी--

सारा ओम इलेक्ट्रॉनिक्स रेफिजेशन है यहाँ पे सभी प्रकार के रिपेयर पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक समान--

यहाँ मछली मंडी है और यहाँ मछली सब का--

बेचने का काम होता है और ये अंकल पाइप से मछली जो है उसको जी मतलब जिंदा वाले मछली में पानी डाल रहे है और ऊपर कपड़ा रखा हुआ है।

एक मछली मंडी है और सामने एक पोल है ।

वहाँ पे टेबल रखा हुआ है और माता सीता बगल में एक पंखे का दुकान है जो--

ये देख सकते है एक राशन का दुकान है और मार्केट में है ये एक किसान सेवा केंद्र है महानु--